बैगनी कलर के फूल लगे हुए हैं रेड कलर के भी फूल लगे हुए हैं।

इस फोटो में वाइट कलर की दीवार है जिस पर येलो कलर का भी थोड़ा बहुत वर्क है।

और झूला जो है येलो और पिंक कलर के पेंट से पुता हुआ नजर आ रहा है।

फोटो में हमें काउंटर पर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई नजर आ रही हैं।

और यहां पर एक वाइट और ब्लू कलर की बोरी रखी हुई है।

और काफी लोग यहां बैठे हुए हैं येलो कलर की चेयर है।

इस फोटो में हमें बहुत सारी चेयर नजर आ रही हैं।